ये एक इंदिरामंटी सोशियोलिटी हॉस्पिटल है यहां पर डॉक्टर अभय कुमार --

यहां पे आते हैं यहां यह रोड बड़ी है बहुत सारे आदमी आए हुए हैं।

एक नदी है ये नदी में बहुत ही गहराई तक पानी है यहां पे सभी लोग --

यहां पे सभी लोग बैडमिंटन खेलने के लिए आते हैं यहां पे बैडमिंटन रखा हुआ है बहुत सारे आदमी --

पूरा टाइम एनीटाइम गाड़ी चलती है यहां पे दो बस खड़ी है और बहुत सारी गाड़ी --